क्युकी उन लोगो ने जैकेट पेहेन रखी है।

सामने अध्यापक खड़े हुए कुछ बता रहें हैं।

यह चित्र सब्जी वाले की सब्जियों का चित्र है।

यह एक खिलौनों की दुकान के अंदर का चित्र है।